और पेड भी है बोहोत सारा हरा-भरा --

और बस जो है खुलने को है इसमें सारे पैसेंजर बैठ चुके हैं।